कैमरा पंखा और बलब भी इस फोटो में दिखाई दे रहा--

सामने बिल्डिंग दिखाई दे रही है कुछ लोग यहाँ से चलते हुए जा रहें है सामने एक झोपड़ी पर ए कुछ बिकने के लिए टंगा हुआ दिखाई दे रा --

हरे कलर का गेट है इसे मंदिर के दरवाजे पर लगा हुआ है इसकी गुम्बडी हरे कलर की दिखाई दे--

पेड़-पौधे और कुछ लोग जमीन पर चलते हुए नजर आ रहे हैं ऊपर बिजली के तार जा रहे।

इस फोटो में जिला पंचायत राजगढ़ का ऑफिस दिखाई दे रहा है जो दो मंजिला इमारत है।

इस फोटो मे एक बिल्डिंग के अंदर का हॉल दिखाई दे रहा है जिसमे खिड़कियां दरवाजे काली पट्टी की छड़ों से लगे हुए।

फोटो में खाली रोड पर एक स मोटरसाइकिल खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

फोटो मे एक मॉल का स्टोल दिखाई दे रहा हैं जिसमे एक लाल कलर की लाइट से बड़े अक्षरों मे लिखा गया हैं तीन लोग एक काउन्टर पर खड़े हुए हैं।

साइड मे मोटर साइकिल और पास मे एक सिक्युरिटी गार्ड आधा हाथ उसका दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में एक शाही ईदगाह का वेलकम गेट दिखाई दे रहा हैं।